और देखिए दिवाल पे कितनी अच्छी तरह से--

ये टाइल्स मार्मर का फैक्ट्री है सामने में देखिए टाइल्स मार्मर बिछा हुआ--

यह देखिए यह एक होटल है और होटल के सामने में देखिए--

फॉरेस्ट जंगल है जंगल के नीचे नदी बह रहा--

ये देखिए ये मकान है मकान के बगल में देखिए कितना अच्छा पानी का नजारा है सामने में गार्डन ही गार्डन --

और सबसे मजे की बात यहां क्या है कि लोग जो है एक जुट हो के इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का आनंद लेते हैं ये पार्क है।